तो देखिए आपको छोटे-छोटे कप दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ कप यहाँ पर देखिए आपको बैग में रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में देखिए आपको आ घास दिखा घास दिखाई पड़ रही छोटी छोटी यहाँ पर देखिए दीवाल दिखाई पड़ रही देख दीवाल में आपको छोटी सी --

ऊपर देखिए आपको मोरम दिखाई पड़ रही है । कुछ यहाँ पे ईंटे पड़े हुए है और देखिए सामने आपको एक रबड़ दिखाई पड़ रही यलो कलर कि । यहाँ पर देखो दीवाल बनी देखिए दीवाल में आपको--

अ फूलों की माला लटकती हुई दिखाई पड़ रही है फूलों की माला कुछ ऑरेंज कलर की है। यहाँ पे कुछ चमेली के माला मिलेगी बीच में आपको रेड कलर के रोज़ दिखाई पड़ रहे हैं कुछ लीफ भी दिखाई पड़ रही है साइड में देखिए आपको थोड़ा रेड रेड कलर का फूल दिखाई पड़ रहा --

यहाँ पर देखिए आप को पार्क दिखाई पड़ रहा है। देखिये पार्क में आपको कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिखाई पड़ रहे है और यहाँ पे छोटे-छोटे पेड़ भी है। देखिए सामने आप को पार्क मे कुछ लोग बैठे भी हैं।

और सामने देखिए आप को टैग दिखाई पड़ रहे है दीवाल पर और यहाँ पे बहोत सारी लाइटें जल रही हैं जो उसका कलर थोड़ा व्हाइट कलर का है। यहाँ पे बॉक्सेस भी है। यहाँ पे भीड़ भी बहुत सारी लगी हुई है यहाँ पे हर स्टैंड में बहोत सारे कपड़े टंगे हुए --

सामने देखे आपको एक मुँह दिखाई पड़ रहा है और देखिये यहाँ पर छोटी-छोटी घासें दिखाई पड़ रही है। ग्रीन कलर की है और ऊपर का कवर ग्रे कलर का दिखाई का पड़ रहा है कुछ छोटी-छोटी घांस भी दिखाई पड़ --